और उसमे लिखा हुआ है रतनगढ़ और यहां पर बड़े बड़े खम्बे भी नज़र आ रहे है कुछ पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है सुबह का नज़ारा दिख रहा है।

ई वो स्टेशन का नजारा है और एक यहाँ पर बड़ी सी रेल जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर छत पर तीन सेट का नजारा दिख रहा है बड़े-बड़े खंभे भी नजर आ रहे हैं।

और यहां पर बिल्डिंग के ऊपर की ओर भारत का तिरंगा लहराया गया है और यहां पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमे महिंद्रा लिखा हुआ है और आजू बाजु बहुत सारे पेड़ नज़र आ रहे है की और सामने मैदान है।

और यहां चारो पृथ्वी माँ की बाउंड्री है और सीढिया भी गयी हुई है और ग्राउंड के चारो ओर बाउंड्री है।

बड़ी नदी नज़र आ रही है नदी का रंग ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नदी के किनारे की ओर बड़े-बडे वृक्ष लगे नज़र आ रहे है कुछ वृक्ष छोटे भी दिखाई दे रहे है।

बड़ी सी स्टोर दिखाई दे रही है जो की और किराना स्टोर है और यहां पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

टेबल पर कुछ सामान दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ कुरकुरो की पैकेट भी टंगी हुई है ऊपर की और बड़ा सा पोस्टर नज़र आ रहा है पोस्टर में लाल अक्षर में कुछ लिखा है कुछ नीले अक्षरो से लिखा है।

दुकान का नजारा दिखाया गया है और यहाँ पर बड़ी बड़ी रेक भी बनी हुई है।

जो की व्हाइट कलर की है और रात्रि नज़ारा दिखाया गया है और यहां पर पेट्रोल भरने की दो मशीने है जो की व्हाइट कलर की है और यहां पर बड़े बड़े पोस्टर नज़र आ रहे है छत पर कुछ लाइट भी नज़र आ रही है।

यहाँ पर एक रेलवे स्टेश का व्यू दिखाय दे रहा है और यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुवा है जिस पर लिखा हुवा है चुरू और यहाँ पर बहुत सारे टेबल रखी हुयी हैं।

का ग्राउंड नज़र आ रहा है और यहां पर तीन गाय खड़ी हुई है जो की बंधी हुई है।

और यहां पर तीन चार घर भी नज़र आ रहे है जो की कच्चे है और यहां पर एक तार भी नज़र आ रहा है और पीछे की और बड़े बड़े पेड़ नज़र आ रहे है।